पर्दो के कलर भी अलग-अलग रहते हैं।

ये एक ज्वेलर शॉप है जंहा पर चांदी के दिया स्टैंड डिजाइन वाले रखे हुए हैं।

बिल्डिंगे भी दिख रही है और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं|

ये बिल्डिंग बोहोत सुंदर लग रही है। ऊपर तीन खिड़कियां हैं और गेट भी बोहोत बड़ा --

ये एक नदी की फोटो है जिसपर एक नाव चल रही है। एक आदमी --

अ इस गौशाला में ओर भी चारों का ढेर लगा हुआ है।

और पीछे झाड़ियाँ है ये पानी कलकलाता हुआ बेह रहा हैं।

यह एक पुल की फोटो है जहां पर --

यह एक स्टेशन की फोटो है।

इधर गुलाबी कलर के परदे टंगे हुए हैं और --

कुछ रेत रखी हुई है। उसपर तीन लड़के बैठे हुए हैं। एक लड़का --

पंखे लगे हुए ओर मेहरून कलर के पर्दे लगे हुए हैं ।

पीछे आसमान बोहोत साफ है और पेड़ पौधे --